--पर चल रहा है कुछ काम चल रहा है यह आदमी भी दिख रहा है अच्छा-सा जगा है लाइट और बल्ब भी जल रहा है सुंदर लग रहा है खूब अच्छा साफ- सफाई जगा है खूब अच्छा --

करने वाला मशीन है जिम सा लग रहा है पीला कलर का सब अच्छा सा लग रहा है एक लड़का खडा है लाल कलर का है लाइट भी है पंखा भी लटका हुआ है जिम करने का मशीन स्वस्थ करने का है अथि है।

ज काला भी जिम करने वाला मशीन काला भी है नीला भी है अच्छा-सा जगह दिख रहा है अच्छा लग रहा --

सुन्दर लग रहा है के नीचे भी कोई चीज का एथी अ प्रतिमा बना हुआ है अच्छा दिख रहा है आज कोई चीज लिखा उखा लग रहा है कोई दिखने में अच्छा लग रहा है।

कोई दिख नही रहा मगर बोहोत अच्छा सा बॉल जल रहा है| सब रंग का बॉल है| रेड कलर का बॉल है हरा कलर का बॉल है सब कलर का है नारंगी कलर है।

महजीद नजर आ रहा है उसमें भी आगे-पीछे दो बहुत बड़ा-सा बना हुआ है पिअर की तरह बना हुआ है बहुत बड़ा महजीद लग रहा है।

जिम करने वाला मशीन सब रखा हुआ है बहुत सारा मशीन हैं रेड कलर का नीचे बिछाया हुआ है कलाई उपर से बहुत सारा मशीन है किसको कोई आदमी दिख नहीं रहा है लाइट बोल जल रहा है सुना-सुना जगह है।